दूसरे दृश्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सामने एक--

लोग यहाँ आते हैं उनकी सुंदरता को देख के इलाज तो बाद में करवाते हैं।

बात करें अगर अगले पिक्चर की तो ये पिक्चर--

होने का इंतजार कर रहे हैं सूर्य जैसे ही अस्त हो जाएगा--

ये एक स्टूडियो तो जान पड़ता है लेकिन यहाँ औरतों के लिए वूमेंस के लिए बहुत से एक से एक बढ़कर --

ड्रेस मटेरियल पाए जाते हैं उनके लिए हर प्रकार के कपड़े यहाँ पचास प्रतिशत की सेल इस वक्त चल रही है तो जल्दी जाए।

दूसरे दृश्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने--

दूसरे इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने--

इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ एक ऑफिस है इस ऑफिस में अभी अभी--

और ये सेलिब्रेशन हम कैसे जान सकते हैं यहाँ लगे हुए दीवारों के गुब्बारे देखकर ये गुब्बारे हमे--

हैं ना आपके दिल में घरकर जाएगा अ--

बहुत बड़े फैन भी बन जाएंगे जी हाँ जरूर से याद रखिए।

ये बारह सिंहा इस वक्त ठीक हमारी तरफ ही देख रहा है।

ऐसा लगता है कि बारहसिन्हा यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार--

आप भी चाहे तो आकर वोटिंग कर सकते हैं लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ वोटिंग करने का अपना एक अलग ही मजा होता है।

दुकान है जो केक्स और बेकर्स की दुकान है।

तो यहां आकर आश्रय ले सकता है खाने पीने की कोई कमी नहीं है।

अगले चित्र में हम देख सकते हैं कि पठानकोट का ओम साइड्रेटर्स हमें दिखाया जाता है।

आटे की चक्की में इस वक्त तो आटा पीसने वाला कोई नहीं है।

आटा जो है वो निकाला जाता है गेहूं को पीस कर--

और जौ बाजरा जिस किस्म की चीजें भी हम चाहें तो पीसकर--

अगले चित्र में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने लैपटॉप --

आजकल हर कोई बना लेता है भले उसके पास कोई काम हो ना--

लेकिन वो लैपटॉप में यहाँ वहाँ उंगली घुमाकर फिराकर उस लैपटॉप --

लेकिन असल में ऐसा नहीं होता पास से देखने पे ही पता चलता--

इस इमेज में जो भी हमारे मोबाइल के स्क्रीन में है यहाँ हम देख सकते हैं कि टायर का स्टॉक रखा हुआ है।

लेकिन सीयर टायर लोग ज्यादा जानते हैं इसलिए उसको अच्छा बोल--

रफ्तार का मजा ले सकते हैं फोर बाई फोर में रफ्तार न--

दूसरे पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे सामने--

लेकिन हमको वक्त से क्या करना है हमको तो देखना है।

ऐसा कॉन्टेंन जिसमें बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं।

नेक्स्ट पिक्चर में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ हम--

लाइट्स का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है जिससे ये दुकान बर्बाद ना दिखाई दे--

अगर अगले पिक्चर की बात करें तो यहाँ हमारे सामने--

पहले ही पिक्चर खींच के अपलोड कर दिया गया है क्योंकि अगर एक बार मेहमान आने लगे तो पिक्चर खींचने लायक नहीं रहेगा और मेहमान--

स्कूल है एक प्रारंभिक स्कूल है प्राथमिक स्कूल है।

कुछ कार्ड बना रहे हैं कार्ड मेकिंग कुछ--

अगले इमेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सी हरी सी फैक्ट्री है।

अगला इमेज अगर हम देखें तो ये इमेज ऊपर से बिल्कुल तरीके से रास्ता खराब हो गया है लेकिन ये इमेज है रेलवे प्लेटफार्म का यहाँ प --

सीढ़ी अगर देखें तो सीढ़ी ऊपर से गुजर रही है।

तैयार रहते हैं जबकि बिना कुछ जाने और समझे नहीं--

अगले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ --

बड़े से संस्था की बाउंड्री है या फिर किसी स्कूल की बाउंड्री और गेट हो सकती है।